यहाँ पे सैलून है फोटो घीचा रहा है और यहाँ पे --

गोंद से अच्छे पहला पेपर से अच्छा-अच्छा ये बना रहा है कितना अच्छा लग रहा है देखने में बच्चे सब ड्रेस पहने हुए है गोंद लगा है ।

यहाँ एस.ए. सारा सगाई रोड गया का है। यहाँ पे डी.जे. लगल है। एगो दूगो तीन गो चारगो है। एगो उ वाला लगा हुआ है लाइट लगा हुआ है।

चला आवे है और यहां पर पानी दिख रहा है। तालाब के किनारे बहुत लंबे-लंबे हरे-हरे पेड़ है और यहां पर उधर घर है और दूर-दूर तक घर दिख रहा है। पेड़ लगल है।

ये बहुत बडा ग्राउंड है जो बच्चे लोग लाइन में खड़े हुए हैं और यहाँ पे स्कूल जैसा लग रहा है स्कूल में बच्चे लोग खेल रहें हैं खाने कुछ लाए हुए हैं कोई टीचर घूम रहा है और इसके बाद अच्छा लग रहा है पेड़-पौधा भी लगा है।

यह लखीसराय बजार का है और यहाँ पे टोटो लगा हुआ है। माइलेज --

ये भारतीय डाक है और यहाँ पे बॉक्स लिखा हुआ है लेटर लिखा हुआ है एक आठ सौ पच्चास घंटा लिखा है एक चौदाह सौ पाँच घंटा है और सोलह सौ पाँच घंटा है ये डाक है।